इस रेलवे स्टेशन का नाम रुपान्त रेलवे स्टेशन है।

साथ ही दूल्हा दुल्हन की फोटो भी लगी हुई है।

इ स फोटो पर एक रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा है।

इन्होने अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए--

मुझे इस फोटो पर एक बड़ा सा प्लेन नजर आ रहा हैं।

मुझे इस फोटो पर एक बड़ी सी किराना शाॅप --

साथ ही टेबलों की बहुत सारी कुर्सियां भी डली हुई नजर आ रही हैं।

मुझे इस फोटो पर एक छोटी सी गली नजर आ रही है।

मुझे इस फोटो पर एक बड़ी सी मस्जिद--

यह पॉइंट बहोत सुंदर फूलों से सजा हुआ है।

तथा इस बोर्ड पर एक अंदर की तरफ आरो भी बना हुआ है।

इस शॉप का नाम शर्मा जी मेडिकल --

इस फोटो पर एक बड़ा सा ऑफिस --